उसपे लिखा हुआ पी_ओ_एस_पी_एच_पी_ई_ओ_डी_वाय_एम_आर_एच और वहाँ सारे आदमी दिखाई दे रहे है और हरी हरी घास दिखाई दे रही।

और व्हाइट कलर के वहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह सात आट नौ और द--

संत्रा मंम कलिंगा अंगूर सेव--

इस इमेज मे मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है यहाँ पर सारे कप और ग्लास रखे हुए दिखाई दे रहे है एक पर्स रखा हुआ हैं और--